कच्चा मकान दिख रहा है और पेड़ लगे हुए हैं बहोत सारे--

और दरवाजे से बोहोत लोग आते जाते हुए दिख रहे हैं।

यह मंदिर देखने में बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। मंदिर के अगल-बगल में अच्छी हरी घास लगी हुई --

ऊं क्लास की सीलिंग और छत सभी सफेद रंग से पुते हुए हैं।

यह लाल रंग की एक किताब है जो कि पंडित लोग--

मशीनरी हो रही है उसका एक मैकेनिक के दुकान पर खुली हुई है।

इस दुकान में कई प्रकार के सूती और खादी के कपड़े रखे हुए हैं।

रखे हुए हैं औ बगल में शायद एक पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोल पंप ।

सामने एक रेस्टोरेंट का व्यू दिख रहा है जिसमें कई प्रकार की टेबलें बिछी हुई हैं टेबलें --

बीम बिछी हुई है और उसमें तकिया और पिलो लगे हुए और पीछे--

कई प्रकार के ट्रक है और एक नीम छोटा सा नीम का पेड़ वेड़ लगा हुआ--